यह किसी मंदिर का नज़ारा दिखा रहा है जहा पे मंदिर की शिकर के ऊपर झंडिया दिख रही है रेड कलर की --

विंडो दिख रहे है गाछ दिख रहे है सामने और येलो कलर का रेड कलर का --

और आस पास पेड़ पोधे दिख रहे है सड़क दिख रही है।

लेपचर में तिन चार दुकाने कच्ची जगह है ये --

और दो तिन उसी उसी लाइन में बेठ रहे है सामान बेच रहे है।

यहाँ पर कोई एक गेट खुला दिख रहा हैं पार्क का और अंदर कुछ डौगी जैसा चिन्ह बना हुआ हैं सामने भी एक डौगी दिख रहा हैं कुत्ता--

के किसी कॉलेज का बाहर का नजारा है जहां पे कुछ बाइक दिख रही है और एक ओटो दिख रहा है।

और एक पास में उसी के पास में एक--

जो अलमारियो में बोक्सो में लगे हुए दिख रहे हैं।

यहा पे कुछ होटल का अंधर नजारा दिख रहा है जहा पे कुछ चेयर है चेयर पर लोग बेठे है लडके बेठे है लडकिय बेठी है।

और इधर भी कुछ लाइटे लगी हुई दिख रही हैं रंग भिरंगी--

और कुछ गोलाकार दिख गोल जेसा आकार बना हुआ है और उसमे पेड़ पोधे दिख रहे है छोटे छोटे --

और ऊपर पंखा का चल रहा है कंप्यूटर भी दिख रहा है और छोटे मोटे कुछ बहुत सामान पड़े हैं बॉक्स के अंदर ऊपर ताको के अंदर अलमारीयो के अंदर --

और दो लडको के उपर एक लड़का खड़ा हुआ डांस कर रहे है उधर भी यही --

और दुकान खुली हुई दिख रही हें काच का गेट लगा हुआ हे उसके ऊपर--

बहत मोबाईल कम्पनियों की नाम दिख रहे है यहाँ पे और राइट साइड में --

कोई और दूकान दिख रही है उसमे एक आदमी बेठा दिख रहा है।

और दूकान में बहोत सारे किराणा का सामान दिख रहे है।

यहाँ पर कुछ कार दिख रही हे जहाँ पर कार की सफाई की जा रही हैं।

यहाँ पेकिंग मूवी ऐसा नाम दिख रहा है दुकान का--

पत्थर और आगे दुकान के अंदर कुछ समान दिख रहे हैं टाइल वगैरह दिख रही है।

यहाँ पे मनोज क्रेन सर्विस एक नाम लिखा हुआ है गाड़ी के ऊपर जो टूटी फूटी गाड़ीयो को एक्सीडेंट होर गाड़ियों को उठा कर ले जाती है।

यहा पे कुछ एक गाड़ी दिख रही है जिसके पीछे दो तिन डब्बे लगे हुए है जहा पे लोग बेठ कर गुमते है इधर उधर।

जैसा लगता है गावं में कोई एस_बी_आई बैंक का दिख रहा है।

यहाँ पे दुकान दिख रही है जहाँ पे दो तीन सीट दिख रही है बैठ ने की--

यहां पे कुछ नजारा दिख रहा है एक झील दिख रही है और ऊपर पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

बाल काटता हुआ दिख रहा है उसके चशमा लगा हुआ है रेड कलर का शर्ट पहन रखा है।

लेफ्ट साइड में भी शिवलिंग दिख रहा वाइट कलर का और यहां पर रेड कलर का शिवलिंग दिख रहा है ब्रिज के अंदर।

यहाँ पर कोई फैक्ट्री का नजारा दिख रहा हैं उपर एक एसीस दिख रहा हैं दो तीन लाईटे दिख रही हैं।

यहाँ पे कुछ दुकान का बहार का नजारा दिख रहा है जो अंदर दुकान बंध दिख रही है।

और आस पास दुकानों पे सेटर लगे हुए है दुकाने बंद है।

इसमे बहुत बड़ा वजन दिख रहा हैं वाइट कलर की मशीन हैं रेड कलर का नीचे का हिस्सा दिख रहा हैं इसका और ब्लैक कलर के टायर दिख रहे हैं।

जहाँ तक कुछ लोग बेठे हुए खाना खा रहे हे कुछ दो तीन लोग चल रहे हैं।

और यहां पे कुछ एक स्टेशन का नजारा दिख रहा है जहां पे लिखा हुआ है हरियाणा मोटरस एक पोस्टर बना हुआ है मोबाइल नंबर दे रखे हैं और सामने दो तीन गाड़ियां दिख रही है।

और यहाँ पे कुछ एक ऊपर टेंट जैसे टना हुआ लगा हुआ दिख रहा है।